इसमें कुछ आदमी टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ये खाना खा रहे हैं और टेबल पे कुछ पानी की बोतले वगैरा रखी हुई है।

पौधा है और इसमें है ना जो मुझे एक खिड़की दिख रही है एक अलमारी दिख रही है।

और जिसके आगे बाइक खड़ी हुई है और दो आदमी है जो बैठ के बाइक रिपेयरिंग कर रहे है।

और इसके आगे गाड़ियां खड़ी हैं एक एक रे वाइट कलर की गाड़ी है एक ब्लैक कलर की कार है।

जिस जिसका नाम श्री हिंगलाज बुक डिपो है इसके आगे तीन आदमी खड़े है और एक छोटा बच्चा है।

बुक डिपो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है और इसका ला रंग ह गोल्डन है।

ये एक समुद्र जे लग रहा है जी जिसमें जिसके आगे सड़क पे --

और एक लड़का है बीच में जिसने झंडा ले रखा है और इसके पीछे ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

आदमी और औरत बैठी हुई है कुर्सी पर और इसमें एक लेडिस है जो माइक में बोल रही है।

और इसमें कुछ व्यक्ति पेट्रोल ले रहे हैं।

इसमें टेबल कुर्सी लगे हुए हैं और टेबल कुर्सियों का रंग लकड़ी का कलर है और इसमें --